यह दृश्य एक मंदिर का है और मंदिर के सामने एक मूर्ति रखी हुई है।

डेरी के आइटम मिलते है और दुकान के सामने लोगों के भीड़ जमा हुई है।

बर्गर चाउमीन मोमोस आदि मिलते हैं।

फुटबॉल ग्राउन्ड है। यहा पर ग्राउन्ड को चारों ओर से नेट से ढक रखा है।